ये दुकान हैं देखिये आप यहाँ पर काफी तरह की चीजे मिल जाती हैं। आप के जरूरत की लगभग सारी सौदा मिल जाएगी।